ये एक रामा टायर --

बर्थडे की तस्वीर है।

शादी वाले पैलेस की तस्वीर हैं।

एक आदमी और दो औरते--

की ओर से लगाया हुआ ह हा आ हैं।

जो की डॉक्टर --

यह एक एस_बी_आई स्टेट बैंक --

छोटे छोटे बच्चों के कपड़े टांगे हुए हैं।

यह एक बेड की तस्वीर है।